शॉप का फोटो लिया गया हैं जिस शॉप का नाम हैं आजाद बुक डेपोट और कुछ पोस्टर लगे हुए हैं। मतलब ऑल बुक्स आर अवेलेबल आई.सी.एस.ई --

एक एयरपोर्ट के बाहर का फोटो लिया गया है जहाँ पे बस में से लोग निकल और जो एर अम अम हवाई जहाज है दो-तीन हवाई जहाज खड़े हुए हैं।

एक शॉप का फोटो लिया गया है और शॉप का नाम है अमूल अमूल डेयरी ।

एक फैक्ट्री का फोटो लिया गया है जिसके दीवारें वाइट कलर की हैं और येलो कलर का पोस्टर लगा हुआ है जिसपे फर्स्ट चॉइस लिखा हुआ है।

और एक टेबल रखी है कुछ लड़कियां पड़ी हुई है सामने एक नीरज कॉम्प्लेक्स का बोर्ड लगा हुआ है व्हाइट कलर की दीवार पर पिंक कलर का बोर्ड है व्हाइट कलर से लिखा है।